और यहां पर सफेद कलर की कुछ विंडो भी लगी हुई है कुछ दो चेयर रखी हुई है जो कि नीले कलर की जो देख रहे हैं बहुत ही अच्छी लग रही है।

यहां पे सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं जो की देखने में बहोत अच्छे लग रहे हैं।

और यहां पर दो तीन मशीनें रखी हुए जो कि ब्लैक कलर की मशीन है यहां पर लेडीज के सूट सिले जाते हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।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

यहां पर कुछ -- बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है ईटें लगी हुई है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है।

और यहां पर कुछ पन्नी है जोकि और भी अच्छी लग रही है चारों तरफ यहां प डेकोरेशन की हुई है।

कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं जो हरे हरे दिखाई दे रहे हैं और कुछ हरे कलर के थमले भी दिखाई दे रहे हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे लग --

यहां पर मुझको एक जिम दिखाई दे रही है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है।

नई नई टेक्नोलॉजी की यहां पर मशीनें रखी हुई है लाइटें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है।

और यहां पर पहले कलर की पट्टियां दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है बहुत ही प्यारी भी लग रही है।

और यहां पर कुछ पेंटिंग बनी हुई है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है।

और ऊपर की साइड में कुछ नीले कलर का पेंटिंग की हुई है कुछ --

और यहां पर बहोत अच्छी डेकोरेशन की हुई हैं पानी भी भरा हुआ है।

जो देखने मे बहोत ही अच्छा लग रहा है बहोत ही प्यारा भी लग रहा है।

आम रास्ता नहीं है यहां पर कुछ दो लड़के जा रहे हैं और उधर से एक लेडिज आ रही है।

यहां पर मुझको बहुत ही अच्छा एक -- डेकोरेशन दिखाई दे रही है बहुत ही अच्छी यहां पर कुछ ।

लाइटें लगी हुई है कुछ वॉयज यहां पर जा रहे हैं खेल रहे हैं ।

योगा कर रही है योगा करते हुए दिखाई दे रही है।

पेले कलर का बनीयान पहना हुआ है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

एक बोर्ड सा लगा हुआ है जिसमें कुछ फोटो उतरे हुए हैं और ये टंकी दिखाई दे रही है जो देखने बहुत अच्छी लग रही है।

दिखाई दे रहा है जो कि एक जोए गांव है और ये एक जोए गांव के नाम से एक बिल्डिंग है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है इसमें --

यहां पर मुझको एक बहुत अच्छी डेकोरेशन भी दिखाई दे रही है बहुत अच्छा यहां पर काम भी चल रहा है।

यहां पर -- कुछ लेडीज खड़ी हुई है एक मैडम दिखाई दे रही है जिसने एक चश्मा लगाया हुआ है।

नीचे कुछ -- एक बराबर में जीना चढ़ताए दिखाई दे रहा है नीचे कुछ -- रवे की --

उ लगेगा उस दरवाजे के दिखाई दे रही है एक ओरत दिखाई दे रही है।

यह एक जिम है और यहां पर योगा भी सिखाया जाता है।

और ये एक जिम भी है जिसमें लाल कलर की लाइटें लगी हुई है जो देखने में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही --

मच्छी जैसी दिखाई दे रही है जो कि मच्छी है जो कि एक सफेद कलर की मच्छी है।

ये मैंने आज पहली बार देखी है ये पन्नियां भरी हुई है।

खतरनाक भी लग रही है यहां पर कुछ कांटे से भी पड़े हुए हैं कुछ --

यहां पर एक पूजा दिखाई दे रही है बहुत ही बड़ी यहां पर पूजा की जा रही है।

किट पहनी हुई नीले कलर की किट पहनी हुई है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही बड़ा ग्राउंड है जो देखने में --

और यहां पर एक लड़का है जो कि अपना फोटो खिंचवा रहा है जिसने नीले कलर का कोट सा पहना हुआ है शर्ट पहनी हुई है।

ओर यहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं कुछ -- एक मिस्त्री भी काम कर रहा है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कुछ यहां पर मिट्टी पड़ी हुई है बल्क पे --

ओर घास भी नजर आ रहा है और उसकी चारों तरफ की बाउंड्री की हुई है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है।

यहां पर मुझको एक एटीएम नजर आ रहा है जो की --

यहां पर नीचे एक एटीएम है बराबर में एटीएम बनाया हुआ है।

ओर इसमें कुछ एडिटिंग की हुई है जो कि ब्लैक कलर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत अच्छी यहां पर डेकोरेशन की हुई है चारों तरफा पेड़ लगाए हुए हैं और छोटे छोटे पेड़ --

चारों तरफ पर सफेद कलर के थमले जो दिखाई दे रहे हैं जो देखने में बोहोत ही अच्छे लग रहे हैं।

-- खाने से बनाए हुए जिससे कि अंदर की साइड धूप आती रहे ऊपर भी --

बहुत अच्छे तरीके से आपने रखा गया --

आनंद धारा डिस्टि डिस्टिक ऑफिस के नाम से है।

गुड्डे रखे हुए हैं एक ये खेल खिलोने की दुकान है पीछे की साइड में।

यहां पर मुझको कुछ जिम का सामान दिखाई दे रहे हैं।

वैल्डिंग की दुकान दिखाई देते रही है इसके पीछे दो तीन कट्टे रखे हुए हैं जिसमे --

गुरुद्वा दिखाई दे रहा है जो कि संत कबीर की दया है।